दो कप दिख रहे हैं दो कटोरी दिख रही है उसमें चम्मच है।

सामने एक बैनर दिखाई दे रहा है।

एंबुलेंस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

अलमारियों में कुछ लेडिस सूट दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

सामने काफी सारे फूल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे बैनर लगे हुए हैं।